पीछे पहाड़ी का दृश्य है।

किया हुआ है यहां दो पहरेदार भी खड़े हैं।

यहां एक कार का शोरूम है जहां बहोत--

आसपास में पेन पेंसिलें व इरेज़र भी है। कुछ पेने भी रखी हुई है।

बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं ऊपर बैलून से डेकोरेशन भी की हुई है एक आदमी--

यहां एक झील भी बेह रही हैं यहां आसपास में जालियां लगी हुई हैं जो दर्शनिया--

यहां एक एक्टिवा खड़ी है एक्टिवा पैक की हुई है और पीछे दो लड़के भी खड़े हैं।

यहां ऑल आउट भी लगा हुआ है यहां कुर्सी पर टॉवल भी टंगा हुआ है।

सामने एक दुकान भी लगी हुई है और यहां--

यहाँ एक लड़की खड़ी है और जो सर की कॉपी में देख --